और इसके साइड में लोहे की सीड़ियाँ बनी हुई है वो भी नीले कलर की है और साइड में एक पेड़ है।

यहाँ पे जो दिख रहा है सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो सफ़ेद कलर की है।

कही लाल मिटी है और आधे आधे में हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

और उधर हॉल के पीछे बहुत से खंबे दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान --